एक लड़के के हाथ में ऑरेंज झंडा है।

इस तस्वीर में हरा-हरा कपड़ा लगा दिख रहा है।

आदमी नजर आ रहे हैं एक महिला भी है।

और उस कढ़ाई के ऊपर एक स्टील की ट्रे रखी है।

बिजली का खंबा और तार लगे हैं।

हरे-हरे पेड़ लगे हैं और हरी-हरी घास है।

जयपुर कोटा झालावड़ भोपाल लिखा है।

तस्वीर में एक आदमी दिख रहा है।

तस्वीर के अंदर हरे-हरे पेड़ लगे हैं।

तस्वीर के अंदर हमें सामान दिखाई दे रहा है।

टेबल पर खाने की प्लेट है।

तस्वीर के अंदर एक बड़ा सा लोहे का गेट लगा दिख रहा है।

और सामान रखा हुआ है।

और बिल्डिंगें बनी हुई--

सूरज आसमान में दिखाई दे रहा है।

हमें अ जमीन में टाइल्स लगे दिख रहे हैं।

हमें दिखाई दे रहे हैं पानी भरा हुआ है समंदर का किनारा है।

और कार खड़ी हुई नजर आ रही है एक--

खिड़कियां ऊपर लगी हुई है और ट्यूब लिखा हुआ है।

हमें बैठी हुई नजर आ रही है मूर्ति चेहरा दिखाई नहीं दे रहा--

हरी हरी घास है और रास्ता दिखाई दे रहा है।

हमें सामने शोरूम में दिखाई दे रहे हैं।

हमें नीला शेड बने हुए नजर आ रहे हैं।